यहां पर काफी सारे लोग खड़े हैं यहां पर एक ड्रिंक कॉर्नर भी है।

यहां पर सोफे भी पड़े हैं सोफे के ऊपर एक औरत बैठी है।

दूसरी गाड़ी का रंग सिल्वर है।

घोड़े के ऊपर एक आदमी खड़ा है।

पीछे दीवार पर लाइटिंग भी है पीछे पौधे भी हैं।

कुछ माल्टे पड़े हैं इधर अनार भी हैं खरबूजे भी हैं।

इसके अलावा इधर लीमू भी पड़े हैं।

एक साइड पे विंडो है विंडो के आगे पर्दे भी लटके हुए हैं।

के पीछे एक सोफा है इसके साथ एक लड़का भी खड़ा है।

इसके इस तरफ एक कुछ टायर भी पड़ा है।

इसके इस तरफ एक कुछ टायर भी पड़ा है।

उसके साथ एक पॉलीक्लीनिक है उसके बाहर भी गाड़ी खड़ी है।

के साथ पाइप भी लगा हुआ है।

एक आदमी व्हाइट शर्ट चलके आ रहा हे।

यहां पर दो लड़कियां हैं ये क्रिकेट मैच खेल रही है।

ये सड़क है सड़क के एक किनारे पर काफी सारे मोटरसाइकिल्स खड़े हैं।

यहां पर काफी गाड़ियां भी हैं कुछ छोटी गाड़ियां हैं कुछ बड़ी गाड़ियां हैं।